ऊपर छत पे एक बड़ा गोल गुंबज बना हुआ है।

यहां दो आदमी पानी में नहाते हुए दिख रहे हैं।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

सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

नीचे जमीन में हरी हरी घास उगी हुई है।

यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे नो एंट्री लिखा हुआ है।

यहां बहोत सारी लाइटें लगाई गई है।

चट्टान पे कुछ हरी हरी झंडिया भी उगी हुई हैं।

यहां बड़े अक्षरों में कार्ड ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड नर्सरी हाउस लिखा हुआ हैं।

यहां एक दो पहिया वाहन भी खड़े हुई है।

यहां ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और कुछ काम कर रहा है।

मकान के सभी दरवाजे में लोहे के शटर लगे हुए हैं।

यह एक कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग भी बने हुए हैं यहां एक रथ भी दिख रहा है।

सामने बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक मछली दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यहां बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे हैं और सेनेटाइजर के भी डब्बे रखे हुए हैं।

यहां बहुत सारे पोस्टर्स एंड मेनू भी लगे हुए हैं।